ये एक भरतनाट्यम शो चल रहा है स्टेज पे कुछ लड़कियां परफॉर्मेंस कर रही है।

ये एक तरह की पूजा हो रही है एक मंदिर है उसमें एक आदमी और औरत पूजा कर रहे हैं।

साथ में कुछ कपल्स बैठे हुए हैं आगे उनके पूजा की थाली वगैरह रखी हुई है।

ये एक शूज शॉप है यहां पर कलरफुल शूज रखे हैं जो देखने से--

बहुत ही प्यारे स्टोन से सजा हुआ है इसके बुँदे भी अच्छे व् अअ--

एक पुरानी गाड़ी है जो कि डैमेज हो गई है इसको रिपेयर करने के लिए गैरेज में आई है पीछे बहुत बड़ा---

खुले हुए हैं बिखरे हुए हैं गाड़ी बहुत गंदी लग रही है देखने से नीचे कुछ ऑयल वगैरह भी पड़ा हुआ है।

कुछ बैग्स भी रखे हैं खिड़क विंडो पर सीधे दो आदमी जा रहे हैं।

ये एक गांव का प्रवेश निषेध आम रास्ता नहीं का गेट है।

ऑर्डर्स का इंतजार कर रहे हैं एक फैन लगा हुआ है।

दुकान बहुत खूबसूरत श् बनी हुई है हर चीज परफेक्ट लग रही है अपनी जगह पर--

फर्स् शेप ब्लैक कवर है ब्लैक कलर का फर्स् है।

पूरा एरिया सब्जी प्याज टमाटर आलूओं से भरा हुआ है खाना पक रहा है पूरे--

बस स्टॉप पे एक ही बस है आसमान में थोड़े बादल हैं।

सारे कोट पेंट हैं शेरवानीज हैं।

ये एक केक शॉप की दुकान है बाहर एक टंकी रखी है उसके बाजू में कुछ लड़के खड़े हैं।

कुछ वाइंस वैगैरह भी दिखाई दे रही हैं। पेड़ पौधे बहोत ऊंचे ऊंचे और लंबे लंबे हैं।

रेड और एक पुत डमी घड़ा है जो जैकेट और--

ये दो ढाबे दिखाई दे रहे हैं ऊपर पानी की चार टंकियां रखी हैं दो काली दो सफेद--

दो आदमी रेस्टोरेंट में खाना पका रही हैं दिखाई दे रही हैं।

एक स्लाइड है के लिए बच्चों के लिए रेक है एक झोपड़ी जैसा--

पहाड़ों पे धूप दिखाई दे रही है आजू बाजू बहुत सारे पेड़ है।

ये बोट लगे हुए हैं ये रास्ता ऊपर की ओर जा रहा है नीचे भी लग्त है।

ये एक पहाड़ी इलाका है घने घने पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

ये कुछ हार मालाएं हैं गेंदे और मोगरे के साथ--